यहां एक नया घर बना है और यहां पर छह छत पर बहुत सारे डंडे हैं।

ऊपर छत पर रंगम रंगी लाइट जली हुई है।

और एक पीले कलर का गुब्बारा है और ब्लैक और पिछली साइड एक घड़ी है।

एक लाल है और एक लीला है और एक काला है और एक लाल है।

और एक काला है और ऊपर व्हाइट कलर का चुना है।

और पिछले साइड एक पेड़ है और एक और एक सफेद कलर का एक ओना सा पर्दा है।

ये एक जे_सी_बी है ऑरेंज कलर की और एक जनरेटर है।

ये एक बहोत सारी कुर्सी है और बहोत बड़ी बड़ी मेज है।

और ऊपर छत पंखा है और एक साइकिल खड़ी है और एक बॉक्स धरा ग गत्तों का।

एक कमरा है इसमें एक बेड है और एक सोफा है और ऊपर लाइट है।

ये एक कैश कोंटर है इसके पीछे एक कुर्सी धरी लोहे की--

और पांच छ लोग खड़े है और एक पेड़ खड़ा है।

ये एक स्कूल है। इसके अंदर कुर्सी रखी है। पेली --